जिसमे किसी आदमी का फोटो है। और ग्रिल भी सामने लगा हुआ है। ग्रिल के पास बोतल रखे हुए है।

और एक दो बालकोनी में कपडा रखा हुआ है। और दुसरे बालकोनी में वो एयर वाला मशीन भी है।

यह एक मछली है यह मछली तलाब नदी में पाया जाता है। यह मछली --

यह बहुत पुरानी महल है महल के नीचे एक चपाकल एक तुलसी का पौधा बहुत सारे बर्तन एक कुर्सी भी रखा हुआ है और दीवारें में जंग भी लगे हुए हैं ।